इस तस्वीर को देखकर य लग रहा है कि यह किसी ब्रिज की तस्वीर है जिसे दो पायों से रोका गया है। ब्रिज के ऊपर लोहे की काफी सारी अ छड़ें लगी हुई हैं जिससे इस ब्रिज को पानी के ऊपर निरंतर रखा जा सकता --

क्योँकि इसमें विभिन्न प्रकार की साइकिलें देखने को मिल रही है।

आ लगता है ये किसी समारोह का दॄश्य है जिसमें इन्हें सम्मानित किया जा रहा है।

इस तस्वीर को देख कर यह लग रहा है कि यह किसी पेट्रोल टंकी की तस्वीर है।